जिसमें चार लोग दिख रहे हैं और उनके सामने चार बोटल भी दिख रहा है और दो व्यक्ति बैठे हुए है और एक व्यक्ति कॉफ़ी पी रहा है और एक कॉफ़ी बेचने वाला है।

जिसमें बहुत सारे कोल्ड ड्रिंकस और एक फ्रीज़ भी दिख रहा है और सामने लाल कलर के डब्बे भी खड़े दिख रहे हैं।

और सामने एक ब-हरा सा पेड़ दिखाई दे रहा है और एक ऑटो खड़ा है जो काले रंग का है और एक एयरटेल बैंक भी दिख रहा है।

यह एक गौतम बुद्धा का मूर्ति है जिसके यागल -बगल और सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और यह एक सम्बेलन है।

वह एक अ टेबल पर बैठा है वह हाफ शर्ट टी-शर्ट पहना हुआ है और उसके हाथ में एक फ़ोन है जिससे वो अपनी फोटो क्लिक कर रहा है।

यहाँ एक भारतीय स्टेट बैंक का शाखा है जहाँ पर दो व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रही है। जिसमे से एक बूढ़ी महिला और एक बूढ़े ब्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहे है।